अऊ टेबल दिखत हे मस्त रंग-बिरंगी के --

औउ छोटे- छोटे ओ कई ठे क्रीम दिखत हे ऐसे लगत हे मस्त दुकान है कहू क --

अइसे लगत हे कुछु चीज के ए मन पढ़ाई करत हे।